दोनों प्रकार की ईंधन मौजूद होते हैं यहां पर फ्री एयर का सर्विस दिया जाता है।

आइए आपको लेकर चलसते हैं एक शानदार लाइब्रेरी की ओर जहां पर आपको देख सकते हैं की आनेको प्रकार की--

यहाॅं पर आनंद लेते हैं जैसे कि क्रिके क्रि आउटडोर गेम्स होते हैं।

आप देख सकते हैं कि यहां पर एक क्लास चल री है जहां पर एक टीचर अपने छात्र छात्राओं को--

और यह किसी विशेष विषय के अनुसार पढ़ाई करवा रहे हैं।

और साथ में महानद खारुन नदी का यहां पर--

इनका उज्ज्वल भविष्य इन्हीं के हाथ में है जिन्होंने काफी अच्छा कार्य--

चित्र में दिखाया गया हैं कि यहां एक पगारिया--

यह दृश्य इंडियन रेलवेज के द्वारा एक रोड पटरी का दिखाया--

आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ग्रह पर जहां पर एक ऑफिस नुमा स्ट्रक्चर --

कुछ समय बिता सकते है जहां पर आपको एक मनपसंद अनुभव--

आईए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दृश्य में जहां पर--

सूक्ष्मदर्शियों का रखा गया है सायद यहां पर किसी प्रकार की अवलोकन किया जाना है।

और इसके व्युअर बाहर बैठकर इस पर किस प्रकार फोटो खिंचवा रहे हैं।